पर्सन दिख रहा है। पर्सन बेड के ऊपर लेटा हुआ दिख रहा है फिरोजी कलर का चद्दर वगेरा डली हुई दिख रही है ऊपर में यहाँ पे

तस्वीरे वगेरा लगी हुई है एक पर्दा लगा हुआ दिख रहा है विंडोज दिख रहा है जो येलो कलर में दिख रहा है और उसके ऊपर एक ईरफ़ोन रखा--

इस इमेज में बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंगों का कुछ व्हाइट कलर में दिख रहा है। यहां पर शटर दिख रही है। सामने जो क्रीम कलर पेंटिंग दिखा है। काफी सारा पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

इसमें एक बिल्डिंग दिख रहा है इसका पेंटिंग कलर जो है कुछ येलो कलर मे दिख रहा है। कुछ लाइटे वगैरा जलती हुए दिख रही है और यहाँ पे काफी सारे प्रतिमाएँ वगैरा दिख रही हे। प्रतिमा के हाथ मे त्रिशूल दिख रहा है गले मे मालाऐं दिख रही है।